और वो बिल्डिंग के बगल में काफी सारी स्कूटी होंडा खड़े हैं कार भी हैं।

एक दुकान है उस दुकान में वो दो शटर लगा हुआ है और क के केबिन भी है।

और जो पिंक कलर का शर्ट पहना है एक अ आसमानी कलर का शर्ट पहना है।

जोकि आसमान से मतलब टच करता हुआ ये पहाड़ी हैं उसके नीचे--

बाजू में एक बिल्डिंग है वहां पे बिल्डिंग पर एक कार खड़ी हुए है कुछ सामान रखा हुआ--